शॉप भी बनी हुई हैऔर एक शटर भी लगा हुआ है।

ये एक चित्र है। इस चित्र में कुछ दुकानें नजर आ रही हैं और एक दुकान टॉय की दुकान है और एक ओ घोषित केंद्र भी बना हुआ नजर आ रहा है।

ये एक चित्र है इस चित्र में एक छोटा सा लेख बना हुआ है और एक मगरमच्छ लेटा हुआ है आस पास बहोत सी घास भी लगी हुई नजर आ रही हैं।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

और आसपास कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र के अंदर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है जिसमें लाइट वगैरह भी लगी हुई है।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

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत से खेत बने हुए हैं।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत बड़ी--

और लाइट के खंबे भी लगे हुए हैं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

परफ्यूम रखे हुए हैं और उसमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है चित्र के अंदर एक स्टोन नजर आ रहा है जिसमें कुछ --

ये एक चित्र है चित्र के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेन नजर आ रही है।

इसमें से एक बिल्डिंग कॉलेज की भी बनी हुई है और बाहर रेड कलर के शटर वाले गेट भी लगे हुए हैं।

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं जिसमें से कुछ सब्जियां भी हैं।

पास में भी एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है और विंडो भी नजर आ रही है।

जो कि साइकिलों की दुकान है जिसमें बड़े की और बच्चों की साइकिल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिसमें से दुकान टेडी बेयर और --

और उसने बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ टमाटर के पेड़ नजर आ रहे हैं जिसमें डालते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बेक अ कुछ बॉडी लोशन व कुछ किताब उम --